यहाँ पे हमारा तिरंगा दिख रहा है। बहोत ऑटो हैं। ऑटोस वैन लोग --

ये कार्यालय में तहरी अअ तहसील अ ध कनोरा करके है और यहाँ पे एन्ट्रन्स पे लिखा गया है--

एम्बुलेंस है और यहाँ बहुत बिल्डिंग है। इनके दो पिल्लर्स है और उनका रंग नीला है और ये बहुत ही लोगो की हेल्थ बी_पी सुगर ये सब जानने के लिए बहुत काम आते है ये हेल्थ सेण्टर --

एक है और एक - क यहाँ साइड में एक सिक्योरिटी गार्ड का रूम दिख रहा है। साइड पे बेंच है। जब लोग चल के थक जायें तो नीचे बैठ के रेस्ट ले के फिर जा के आनंद ले सकतें हैं।

आम लगे हुए हैं शायद और वहाँ हमें आम आ मार्च या ऐप्रिल महिने में बहुत मिलते हैं और यहाँ शायद एक छोटा कार्यालय है और यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

बस गुलाबी और सफ़ेद रंग की है और एक आदमी भी कुछ पर्पल या गुलाबी रंग का टी-शर्ट ही पहन के उस बस को देख रहा है शायद उसको बस पसंद आ गयी --

काले रंग का गेट है। बाहर बहोत बाइकें खड़ी हुई हैं। ये शायद कोई अपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस के लिए अंदर जाने की जगह हो।

एक अपार्टमेंट है। वहाँ पे बहोत सारी बैल्कनीज़ दिखाई दे रही हैं। वेंटीलेटर्स दिखाई दे रहे हैं। पंखे भी है बालकनी --